सीमेंट वाला अउ पूरा काम करत हे फेक्ट्री मा अउ आधा झी मन ऊपर मत--

बहुत सारा पेड़ जंगल टाइप अउ हरा-भरा ये दिखत हे पौधा ह अउ मंदिर टाइप के ये दिखत हे अउ काला काला अउ आसमान मन दिखत हे ऊपर ऊपर म मस्त य व हे का बोल पहाड़ --

अउ झाला वाला टाइप दिखत हेवे हे मच्छरदानी दिखत हेवे हे और हरा-भरा पूरा खेत दिखत हेवे हे अउ कैरेट म मस्त लउकी --